अ जिसके अ बीचो बीच एक पुल अ बहुत बड़ा अ पुल भी है।

और सफ़ेद कलर एक बिल्डिंग के पास खड़ी हुई है रोड के ऊपर।

जहाँ पर तीन छोटी अ लड़कियाँ अ नृत्य कर रही हैं।

जिनके हाथों पर मोमबत्तियां जल-जली हुई रखी हुई हैं।

जो अ एक जो रिक्शा है।

और ये हॉल आ बहुत बड़ा है।